बचे का खूब केलने वाला है एकदम स्विमिंग पूल है। उस में आदमी जा कर के नेचे आता हे जो डायरेक्ट पानी में चाल जाता हे । और जहा पानी भी हे और सफ़ेद सफ़ेद--

नदी है बहुत गहरा पानी हे । इधर अभूत जड़ी है। नदी का कलर कला है। इधर तीन स्ट्रेचर में असमान बना हुआ है।